बहोत ही अच्छा ये रूम लग रहा है अभी ये रूम खाली है ।

ये स्पोर्ट्स का ये सब मिल रहा है बॉल --

और यहाँ पे उसका नाम रखा गया है वेदांता बुक्स वर्ल्ड --

और पहाड़ में पेड़-पौधे बिखरे हुए है बहोत ही बहोत ही अच्छा सुन्दर नजारा है सामने नदी है ।

जैसा हम देख पा रही हुं सुबह का समय है सामने एक बड़ा सा स्पेस है और फू कॉटन से स्पेस को सजाया गया है और बैलून्स सजा गया है।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ ये दो प्रकाशालाय है सामने बड़ा सा नदी है और चारो तरफ पेड़ है और दूर - दूर तक --

बगीचा भरा हुआ है बहुत ही --

जैसा की मै देख पा रही हु सुबह का समय है सामने बड़ा सा मैदान है।

जैसा हम देख पा रहे है ये सुबह का समय है और ये फूलो का --

फूल बेच रहै है फूल --

जैसा की मै देख पा रही हु सुबह का समय है सामने एक व्यक्ति है।

और चर्च के सामने बहुत सुंदर खुला जगह हैं जहां इसका रंग बहुत सुंदर हैं।

सामने एक बड़ा सा मैदान है ।

ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है।

गन्ना वसजे रखा गया है। ऐसा लग रहा है कोई पूजा हो रही हो।

जैसे मै देख पा रही हु सुबह का समय है और सामने बड़ा सा खुला जगह है ये बस स्टैंड है।

और बस स्टैंड में बस खड़ा है और यहाँ में पंछियाँ अम बैठे है और दाना चुग रहे है और बहोत सारा चारो तरफ पेड़ है ।

बहुत सा सुन्दर तरीके से --

और बहुत सिम्पल सा--

जैसा की मै देख पा रही हु ये सुन्दर सुबह का समय है और--

और यहाँ बस स्टैंड में चार ठो बस खड़ा है जहाँ तीन ठो ब्लू कलर और एक --

सामने थोडा जगह है चारो तरफ पेड़ है बिल्डिंग है।

और अ सूरज ढलने जा रहे जा रहा--

किताब में पढ़ा सके थे जिसपे ऊपर यह रिपोर्ट --